ramu सुबह उठता है और school जाने के लिए तैयार होता है
वो नींद में होता है पर फिर भी वो अपना brush लेता है paste लगता है और brush करना शुरू करता है
वो जल्दी से ब्रश करता है क्योंकि उसे school जाने की जल्दी होती है
वो कुल्ला करता है और नहाने दौड़ता है और तैयार हो bath है
रामू की माँ उसे नाश्ते के लिए बुलाती है
ramu नाश्ता करता है
खाना उसके दांतों के बीच फँस जाता है और वो ज़ोर से चीखता है
माँ उसे पानी देती है और उससे कहती है school जल्दी जाओ क्योंकि उसे पहले ही देर हो गयी है
ramu को अभी भी दर्द है फिर भी वह bag उठाकर स्कूल चला जाता है
वो रस्ते में अपने दोस्त से मिलता है
उसको दर्द में देखकर उसका दोस्त suresh पूछता है क्या हुआ
ramu पूरा किस्सा बताता है
suresh ramu को धैर्यपूर्वक सुनता है
फिर who उसको एक दन्त चिकित्सक अंकल के बारे में बताता है जो उसके पड़ोस में रहता है
suresh ramu से school के बाद उसको दन्त चिकित्सक अंकल के पास ले जाने का वादा करता है
digital divide के spoken tutorial में आपका स्वागत है
यहाँ हम दाँतों को स्वस्थ रखने की चिकित्सा प्राथमिक देखभाल और दन्त चिकित्सक से परामर्श के care में बात करेंगे
school से वापस आकर suresh और ramu दन्त चिकिइस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद त्सक से मिलते हैं
दन्त चिकित्सक रामू के दाँतों की जाँच करता है और उसे बताता है कि उसके दाँतों में एक छोटी the cavity है
फिर वो बच्चों को cavities के कारण बताता है
* दाँतों के बीच खाना अटक जाना
* ठीक से ब्रश न करना
* कोल्ड drinks जिनमें citric acid की % ज़्यादा होती है
फिर दन्त चिकित्सक इस तरह के दर्द से बचने के लिए सावधानियाँ बताता है
* mineral और calcium से भरपूर खाना खाएं
* अपने दांतों को ठीक से ब्रश करें
* दिन में दो बार ब्रश करें
* प्रत्येक बार खाने के बाद कुल्ला करें
सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रत्येक छः माह में दन्त चिकित्सक के पास जाना उपयुक्त माना जाता है
दन्त चिकित्सक के पास जाएँ
* अगर दाँत असमान मिले हुए या अस्तव्यस्त हों
* अगर दाँतों में cavities का पता चले
* अगर दांतों में गर्म या ठंडा लगे
* चबाने वाले क्षेत्र के अंदर और बाहर अच्छे से brush करें
* अच्छी साँस पाने के लिए और कीटाणुओं से छुटकारा पाने के लिए जीभ को भी brush करें
प्राकृतिक विकल्प miswak miswak दातून है जो peelu पेड़ की टहनी से बनती है
* दातून को चबाते रहने की ज़रुरत है
* फिर इस दातून को प्राकृतिक brush की तरह उपयोग किया जा सकता है
याद रखें अपने दाँतों की देखभाल और समयसमय पर दन्त चिकित्सक के पास जाना अच्छा मौखिक स्वास्थ्य रखने में सहायता करता है
सुनने के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी
t t t बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद